देखने से मालूम हो रहा है। ये तस्वीर गिरजा घर की है। यहाँ पर एक महिला माइक पे कार्यक्रम को संबोधित कर रही है।

ये किसी तरीके का गेरेज मालूम पड़ रहा है जहाँ पे एक बड़ी सी कार बड़ी सी गाड़ी धुलने के लिए आई है।

यह तस्वीर किसी शादी समारोह की हो सकती है क्योंकी पीछे की ओर की ससजावट को अगर आप देखे तो फूलों द्वारा बहुत ही ख़ूबसूरती से की गई है।

और ये पीछे का वातावरण आप देख तोह पीछे बोहोत ही शांत मोहोल है और आसपास की सारी चीज़े दिखने मे बोहत स्वच्छ और क्लीन दिख रही है।

यह दृष्य एक ब्रिज का दिखाई दे रहा है ब्रिज के नीचे लोग आते-जाते नजर आ रहें हैं और इसीलिए दीवार पर एक स्वछता के ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत जरुरी है।

जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहोत जरुरी है। कहते हैं करो योग रहो निरोग। अगर निरोगी काया चहिए तो योग जरुर करें।

दृश्य किसी कोचिंग का हो सकता है क्योंकि पीछे एक बोर्ड है और कुछ होर्डिंग भी लगी हैं जिनपे लिखा है हिंदुस्तान कांसेप्ट इंग्लिश जी हाँ --

यह दृश्य किसी मंदिर का है क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है।

छोटे बड़े स्क्रीन की हर सुविधा के हिसाब से जो आपको सुविधाजनक लगे आप ले सके हर तरह का लेटेस्ट मोडल यहाँ पे मौजूद है।